और यह पंडाल देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है और इनमे फूल कपड़े सजाए गए है जो बहुत अच्छे-अच्छे है।

और यह दुकान में लाईटे अच्छी सी लगाई गई है जो देखने में बहुत ही अच्छा है।